सामने में कलि कुल्ली भी दिया गया है।

छोटे-छोटे गिट्टी मट्टी वगेरा है।

में दो पंखे लगे हुए हैं सामने में भी दो पंखे लाईटें वगेरा लगी हुई हैं पोस्टर वगेरा लगे हुए --

एक पेट्रोल पंप है सामने मे दो तीन ऑटो है कुछ लोग ऑटो मे बैठे हुए कुछ लोग ऑटो मे खड़े हुए है ऑटो के पास।

सामने में पोस्टर वगेरा भी लगा हुआ --

ऊपर में लाइट वगैरह लगी वी हैं। पीछे में टावर भी हैं दो टावर हैं लाइटे तारे वगैर --